चर्च का है कुछ न पढ़ रहे है उन लोग--

और यहाँ देखना यहाँ वायर आएर भी लगा हैं कैमरा वेमेरा भी लगा होगा अच्छा दिख रहा है और जगह --

तीन मंजिल का घर है नीचे बोहोत सारी दुकानें हैं।

जा के देखते है अब क्या करने है आगे--

यह ऐसे बस में यहाँ पर जाने का सफर वफर करने का है ही नहीं यहाँ--

ए के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन का और हाँ --

ल फर्स्ट ईयर वो च ओपन किए है इनकी फिटनेस जिम --

और अच्छा दिख रहा है फल फ्रूट आम वाम भी और साइड में न कुछ और ठेला भी है चाट-वाट का दुकान है क्या यहाँ--

काफी वो दोस्त यार लोग के संघ में एन्जॉय एन्जॉय करो घूमो फिरो।--

अच्छा लग रहा है स्वादिष्ट हो और वो भी खाने पीने के लिए बेहतरीन स्वाद --

तो शायद कुछ मेडिकल ऑडिकल का वो कर रहै हैं ट्रीटमेंट --